विद्यार्थी पढने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते है यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते है।

दूर दूर से अपना बनाने के लिए आते हैं ।

यह एक पेट्रोल पंप है यह पेट्रोल पंप बहुत बड़ा और सुंदर है यहाँ पर पेट्रोल शुद्ध मिलते है।

यह एक खूबसूरत बिल्डिंग है यह बिल्डिंग बहुत ही बड़ा और सुंदर है।